टेलीविजन में कुछ चित्र दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे सामने की ओर में एक दरवाजा लगया गया है जिसमे वाइट कलर पोता गया है और चैनल गेट है ।

बीच में से एक नहर गई हुई है जिसमें काफी सारा पानी भरा हुआ --

खिड़कियाँ जो है वो लोहे की बनाई गई जिसमें वाइट कलर किया गया है।

और सामने की ओर में एक ब मोबाइल रखे गए है देखने पर लग रहा है कोईं फोटो क्लिक कर रहा है।

जो की जल रही है यहाँ पे जो दीवाले है उनमें रेलिंग्स --

यहाँ पे एक बैनर टांगा गया है जोकि रेड कलर से है ।

और एक चार दिखाई दे रहा हैं जो की रेड कलर की है।

और देखने पर लग रहा यह अवार्ड जितने के लिए जो फोटोज लगाई गई हैं वही हैं।